इसमें काफी खूबसूरत सा चट्टान चट्टान के बीच एक टेंपल खड़ा हुआ--

जिससे वायर जाता हुआ दिख रहा है ऊपर सुंदर सा आसमां है।

साइड में एक ऑटो भी है ऊपर में झालरे लगी है जो जल रही है और इसमें युवक और युवतियां नाचते हुए दिखाई दे --

एक अमूल की दुकान दिखाई देती हुई अमूल दुकान में कहीं सारे रेफ्रिजरेटं डेरी प्रॉडक्ट्स बिकते हुए--

और बहुत टाइप की प्रोडक्ट्स भी बिक रहे है जो पेहनने के योग्य होते हैं।

और काफी खूबसूरत सा माहौल है।

और यहां काफी सारी फर्नीचर्स भी हैं।

और पीछे काफी सारी ट्रांसफॉर्मरस भी हैं।

बहुत ही खूबसूरत सा बिल्डिंग बिल्डिंग के बाहर बहुत बड़ी ग्रीन --

बिल्डिंगो के बहार एक मेन गेट लगा हुआ ऊपर से एक दीवार जाती हुई--

तेजा बुक स्टॉल के बाहर काफी सारी चित्र लगी है।

ऊपर में एक सुंदर सा कार्ड बोर्ड लगा है।

काफी खूबसूरत सा माहौल है इसको एक आदमी--

उसका नाम है अरुण आइसक्रीम्स यहां पे आइसक्रीम्स के अलावा--

इसमें बहुत ही खूबसूरत सा एक स्टेचू बना है स्टैचू कृष्ण भगवान की है स्टैचू के बाहर--

और काफी सुंदर सा आसमां है।